यह ग्राम पंचायत जिगड़ी है यहाँ जो है ये ग्राम पंचायत जिगड़ी का ये लोकेशन जो है ये बहुत पुराना ही दिखाई दे रहा है।

यह लोकेशन बहोत खुबसूरत ही दिखाई दे रहा है यहाँ पे लोग आके देख रहे है इस लोकेशन को बहुत ही अच्छा दिखता है।

यहाँ मिझोस परसपुर गुंडा के स्थान पर बसा हुआ है यह विधायल बहुत ही सुसज्जित और पुराना महाविधायल है।